एमे लाइट लाइट डॉट दिखत हे अंदर ह भी कुर्सी बहुत सारा हे अउ तीन गो आदमी दिखत हे एक जगह अउ एक जगह दू गो आदमी दिखत हे।

--पापिया टेलर लिखी से ओकर अंदर बहारें कटे कोई स्कूटी खड़ा है और आउए एगो बाइक खड़ा है और ढेरों नाल स्कूटी खड़ा है एगो को दुकान का फोटो भी दिखत है।